बड़े-बड़े धुप दिखाई दे रहे है।

लाल कलर की शर्ट पहने हुए लड़के ने सर पर हाथ धरे हुए हैं ।

सब नीचे हरी घास दिख रही है । दूर बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे हैं ।

पास में दीवाल के प्लाई नजर आ रही है । नीचे के साइड से व्हाइट कलर के टेबल बनी हुई दिखाई दे रही है ।

गाड़ी दिखाई बस दिखाइ दे रही है एक। वाईट कलर की कार नज़र आ रही है। लोग दिखाई दे रहे हैं।

नीचे पानी दिखाई दे रहा है। लकड़ी के जाल दिखाई दे रहे हैं। खम्भे दिखाई दे रहे हे लकड़ी के।

आइट साइड में बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे दिखाई दे रही है।

जेन्ट्स दिखाई दे रहे हैं कुछ लेडिसे नीचे जमीन पर बैठी हुई दिखाई दे रही है ।

माइग्रोन दिखाईया दे रहे हैं।

में बड़ा सा झोला टंगा हुआ दिखाई दे रहा है।

एक जेन्ट्स के सर के ऊपर टॉवेल रखा हुआ दिखाई दे रहा है। पास में बड़े बड़े झोले दिख रहे हैं।

गेंदों के फूलो की माला दिखाई दे रही है बहुत सारी है इकट्ठा दिखाई दे रही है।

और जाले दिखाई दे रही हैं। अंदर के साइड में एक वाईट बिल्डिंग नज़र आ रही है। लोहे के पाइप दिखाई दे रहे हैं।

ब्लाउस रखा हुआ दिख रहा है।

कांच के अंदर टेबल रखा है पीले कलर का | उसके ऊपर एक स्टील का डब्बा रखा हुआ है । पास मे --